अ टाइल्स लगे हुए है ऊपर नीचे एक मैदान दिखाई दे रहा है सामने एक ब्लैक --

सामने हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बस खड़ी हुई है जीप है कार है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं | सामने भी बहुत सारे पेड़ और घास दिखाई दे रहे हैं जिनमे से कुछ पेड़ --

सामने एक किचेन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन रखे हुए है एक औरत कुछ खाना पका रही है साइड में एक आदमी बैठा हुआ है और वो कुछ लिख रहा है।

लाइट टाइप का बना हुआ है और ये सामने पाइप दिखाई दे रहा है | जहाँ पर काफी पानी उड़ रहा है और बहता हुआ दिखाई --

आकर्षित तरीके से पेड़ को बनाया गया है और सामने कुछ बगीचे और काफी हरियाली दिखाई दे रही है जस्ट लाइक अ पेंटिंग ।

ये एक ऑफिस की तरह दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी बैनर्स लगे हुए हैं और कुछ-कुछ दीवारों पर लिखा हुआ हैं पोस्टर्स पे जो काफी ब्लर है जिसे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ।

सामने एक टेबल लगी हुई है जिस पर एक आदमी खड़े होकर साइड में कुछ कर रहे है और साइड में कुछ कुर्सियां भी रखी हुई।

सामने हमें एक बाइक का शोरूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी कलरफुल बाइक्स रखी हुई है साइड में टेबल रखा हुआ है दिवार पर कुछ पिक्चर्स --

कुछ बड़े पेड़ लगे हुए हैं कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं साइड में बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैंजो देखने में बहुत खूबसूरत --